सारी मोटरसाइकिल्स रखी गई।

तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर--

यहां पर बहुत सारी लाइटस लगी हुई हैं।

फ्रूट्स खड़ी हुईं हैं।

है यहां पर बहोत सारा पानी--

बहोत सारे पैसेंजर देखना--

तो जैसा कि आप देख--

सकते हैं यहां पर कुछ--

बहुत बड़ा स्कूल है जहां पर --

यहां पर बहोत सारे बिल्डिंग्स है और--

सकते हैं ये एक--